इसमें दो तीन डंडे रखे हुए हैं और बीच में दीवाल वा--

यहां पे बहुत सारे गमले रखे हैं बहुत सारे फूल लगे हैं।

बहुत सारे लोग हैं इधर दुकान दिख रहा है हम कुछ लोग

इस इमेज में यह एक केक है।

इसके ऊपर हार्ट शेप भी डेकोरेट किया गया है।

ओस चौड़ी रोड है उधर घर बना हुआ है।

दो लाइट लगी हुई है स्विच लगा हुआ है।

और सामने सीनरी लगी हुई है बहोत सारे बॉक्से रखी हैं।

बहुत सारी लाइट लगी है।

बहोत अच्छा लग रहा है बहोत प्यारा लग रहा है।

और सामने गाड़ी खड़ी है उसके पीछे भी ग--

और सामने दीवार दिख रहा है रेड कलर गोल्डेन कलर --

उसके अंदर नाव खड़ी है।

और सामने हरे हरे बहोत घास जंगल खेत --

और तालाब में पानी भरा हुआ।